इस पिच्चर में बहोत सारे लड़की को और पीछे लड़की का पीछे भी वाइट कलर का बण्डल भी है। और --